और कुछ नांव चला रहे है।

केला टंगे हुए है अंगूर रखे हैं ।

जिसपे से बच्चे ऊपर निचे हो रहे है।

वो आधी ब्लैक कलर की है आधी वाइट की दिख रही है।

और घुमने के लिए अच्छी सी जगह दिख रही है।

इसपे लाल कलर की गजडे लगे हुए है।

पेड़ के पास में भी एक बिल्डिंग बनी हुई है।

और कुछ आना-जाना लगा है बच्चो का।

और पक्षी भी बाईट बाईट कलर के उड़ रहें हैं।

आसमान नीला नीला पीला हरा दिख रहा है।

एक नीले कलर का ट्रेक्टर खड़ा हुआ--

एक बस खड़ी हुई है जो वाइट कलर की है और उसके ऊपर बहुत सारे जेन्स बैठे है और--

पेड़ लगे है जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे है मकान का कलर भी थोड़ा-थोड़ा पिंक दिख रहा है।